तस्वीर में आप देख सकते हैं की बहोत ज्यादा लाइटों का प्रयोग करके एक गेट बनाया गया है।

इस तस्वीर में आप देख सकते है की एक पुरुष व्यक्ति एक महिला को --

उसके गर्दन में एक काले रंग की टाई तथा उसने एक काले रंग का सूट पहन रखा है तथा पीछे में फूलों से सजा कर दो दिल बनाए गए हैं तथा गुलाबी रंग के पर्दे लगाए हुए हैं।

तथा कुछ पेड़ भी इस पोस्ट ऑफिस के बाहर लगे हुए हैं।